मेहमानो के बैठने के लिए यहाँ पर बेंच भी लगाए गए है उसमें कुछ रेड कलर और वाइट कलर की कुर्सियाँ शामिल हैं ।

कुछ कोरे है जिन पर फ़ूल लगे हुए है जोकि लाल कलर के हैं |

ये इमेज स्वेम गार्डन की है और इसका स्वेम गार्डेंस के नाम का एक बैनर भी लगा हुआ है |

और शर्टस टंगी हुई हैं।

और एक सेल्स मैन खड़ा हुआ है |

यहाँ पर एक लड़का ब्लैक कुर्ते में खड़ा हुआ है उसके गले में उसने एक पिले रंग का गमछा डाला हुआ हैं।

दूर थोड़ी दूर तक और भी बहुत- सी बिल्डिंगे नजर आ रही है |